एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर एक काले कलर का गेट भी लगा हुआ है लोहे का यहाँ पर काफी सारी बिल्डिंग है जो पीले कलर से पेंट की गई है।

एक कार दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहें हैं आसपास कुछ काँच के गेट भी लगे हुए हैं आसपास जो दीवाल है वो वाइट कलर से पेंट की गई है यहाँ पर एक लड़का है।

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर काफी सारी लाइटिंग भी जल रही है यहाँ पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर पार्किंग के लिए नीचे जगह भी दिखाई दे रही है।

पर एक कुछ क्लास दिखाई दे रही है जहां पर काफी सारे बच्चे पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर व्हाइट कलर का पेंट पूता हुआ हैं सभी जगह यहां पर लाईटिंग भी जलती हुई नजर आ रही है।

एक ऑफिस है इस ऑफिस में काफी सारी लाइटिंग जल रही है यहाँ पर वाइट कलर के टाइल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर ब्लैक कलर की कुर्सी रखी हुई हैं यहाँ पर काफी शारे लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर एक --